क्लास बनाने पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे
वास्तविक संसार में क्लास
जावा में क्लास
जावा क्लास की संरचना
जावा क्लास के लिए सिंटेक्स
और जावा क्लास का एक साधारण उदाहरण
यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं
उबंटु वर्जन 1110 जेडीके 16 और इक्लिप्स 370 इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि इक्लिप्स में एक सामान्य जावा प्रोग्राम को कैसे लिखें कंपाइल और रन करें
यदि नहीं तो कृपया spoken tutorialओआरजी पर उपलब्ध इन विषयों पर स्पोकन ट्यूटोरियल्स देखें
अब देखते हैं कि वास्तविक संसार में क्लास क्या है
इस संसार में जो भी हम देख सकते हैं सभी ऑब्जेक्ट्स हैं
और सभी ऑब्जेक्ट्स को विशेष समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है
प्रत्येक समूह को एक क्लास के रूप में देखा जाता है
उदाहरणस्वरूप मानव एक क्लास है
हम सभी इस क्लास के भिन्न ऑब्जेक्ट्स हैं
हम सभी के पास भिन्न प्रोपर्टी हैंजैसे आँखें पैर हाथ आदि
जो कि मानव क्लास के लिए समान है
देखना खाना चलना आदि व्यवहार हैं जो कि मानव क्लास के लिए समान हैं
अब देखते हैं कि जावा में क्लास क्या है
क्लास बनने वाले प्रत्येक ऑब्जेक्ट्स का एक ब्लूप्रिंट है
जावा क्लास की संरचना क्लास परिभाषित करता है कि प्रोपर्टिस के सेट को वेरिएबल्स कहते हैं
और बिहेवियर के सेट को मेथड्स कहते हैं
अब क्लासेस को घोषित करने के लिए सिंटेक्स देखें
मॉडिफायर - क्लास classname कर्ली ब्रैकेट्स में वेरिएबल कंस्ट्रक्टर और मेथोड डिक्लेरेशंस
इनके बारे में हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे
अब इक्लिप्स का उपयोग करके एक साधारण क्लास बनाएँ
मैंने इक्लिप्स पहले ही खोल दिया है
अब एक प्रोजेक्ट बनाएँ
अतः फाइल पर क्लिक करें न्यू पर जाएँ और जावा प्रोजेक्ट पर क्लिक करें
न्यू प्रोजेक्ट विजार्ड में सी और डी बडे अक्षर के साथ प्रोजेक्ट का नाम क्लासडेमो प्रविष्ट करें
फिर फिनिश पर क्लिक करें
हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट क्लासडेमो बन गया है
अब हम स्टूडेंट नामक एक जावा क्लास बनायेंगे
क्लासडेमो पर दायाँ क्लिक करें न्यू पर जाएँ और क्लास पर क्लिक करें
न्यू जावा क्लास विजार्ड में नाम के रुप में स्टूडेंट टाइप करें
हम देख सकते हैं कि मॉडिफायर यहाँ पब्लिक है
यह दर्शाता है कि क्लास हर जगह सभी क्लासेस पर दर्शनीय है
यदि क्लास में मॉडिफायर नहीं है जो कि डिफॉल्ट है तो यह केवल इसके अपने पैकेज में दिखाई देता है
पैकेजेस के बार में हम अगले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे
यहाँ मैंने पब्लिक चुना है
मेथड स्टब्स में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन चुनें
फिर फिनिश पर क्लिक करें
हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट नामक क्लास बन गया है
अब मैं कमेंट्स हटाता हूँ
स्टूडेंट क्लास में प्रोपर्टिज जैसे नामे रोल नंबर मार्क्स आदि सम्मिलित हो सकती हैं
अतः स्टूडेंट क्लास में मैं दो वेरिएबल्स रोल नंबर और नामे घोषित करता हूँ
अतः मैं टाइप करूँगा इंट रोल अंडरस्कोर नंबर सेमीकॉलन
स्ट्रिंग नामे सेमीकॉलन
अतः मैंने दो वेरिएबल्स घोषित किये हैं
अब एक क्लास में मेथड्स सम्मिलित होते हैं
अतः अब स्टुडेंटडेटेल नामक एक मेथड बनाएँ
यह मेथड प्रत्येक स्टूडेंट का विवरण देगा
अतः टाइप करें वॉइड स्टुडेंटडेटेल फिर ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स खोलें
अब यह मेथड स्टूडेंट का रोल नंबर और नाम देगा
अतः टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में थे रोल नंबर इस हम इसे नंबर भी टाइप कर सकते हैं डबल कोट्स को बंद करें प्लस roll number सेमीकॉलन
अगली लाइन टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में थे नामे इस प्लस नामे और सेमीकॉलन
अब मेन मेथड में हम टाइप करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में वे हेव क्रिएटेड आ क्लास विथ त्वो वेरिएबल्स एंड 1 मेथोड इस प्रकार हमने क्लास स्टूडेंट बनाया
अब मैं कंट्रोल और एस कीज को एक साथ दबाकर फाइल को सेव करुँगा
कंट्रोल और फ़11 कीज को एक साथ दबाकर प्रोग्राम को रन करें
हमें आउटपुट प्राप्त होता है वे हेव क्रिएटेड आ क्लास विथ 2 वेरिएबल्स एंड 1 मेथोड जैसा हमने मेन मेथड में टाइप किया था
इसी प्रकार हमने सफलतापूर्वक क्लास बनाया है
अतः इस ट्यूटोरियल में हमने जावा में क्लास और क्लास बनाने के बारे में सीखा
स्वमूल्यांकन के लिए वेरिएबल्स ईएमपी अंडरस्कोर नंबर और ईएमपी अंडरस्कोर नामे के साथ एम्प्लॉयी नामक एक क्लास
और मेथड प्रिंटेंप्लॉयी बनाएँ जो एम्प्लॉयी जानकारी दर्शाए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
httpspoken tutorialorgNMEICT Intro अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं